कच्चा मैदान भी है ये यहां पे--

और ये यहां पे देख सकते हो ये गाड़ियां दिख रही है और यहां पे--